इस चित्र में मुझे टेंट का लगा दिखाई दे रहा है तथा यहाँ बहुत सारी लाईटें जल रही हैं।

अब इसमे मुझे कई सारे पैड पौधे नज़र आ रहे है एवं इसमे मुझे सफेद कलर की बाटली नजर आ रही है और नारियल के पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

इस चित्र में मुझे दिखाई दे रहा है की यह किसी मंदिर की तस्वीर है जहाँ मुझे नीम के पेड़ भी दिखाई दे रहै है इसमे मुझे बहोत सारे बुजुर्ग व्यक्ति तथा कुछ यंग व्यक्ति भी नजर आ रहै है इसमे मुझे बहोत सारे घर भी दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र मे मुझे नजर आ रहा है की यह किसी मिष्ठान भंडार की चित्र है जिसमे अनेक प्रकार की मिठाईया जिस--

इसमें मुझे दिखाई दे रहा है की यहाँ बहुत सारी पिचकारीयाँ तथा अनेक प्रकार कि खेलने की वस्तुये रखी गई है जो एक अलमारी में--

बहुत सारे डिब्बे दिखाई दे रहे हैं इसमें मिठाइयां एवं टॉफी है इसमें मुझे चिप्स एवं बहुत सारे शैंपू के पैकेट में दिखाई दे रहे हैं इस चित्र में मुझे एक काउंटर नजर आ रहा है जो भूरे रंग --